कुछ बाइक भी रखी हुई हैं और एक आदमी खड़ा है।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

इसमें हमें कुछ डब्बे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बिजली के तार भी दिख रहे हैं और यहां पर एक--

मस्जिद का फोटो लग रहा है।

और एक मायरो वे क्रॉवेब भी रखा है और उसके पीछे एक पंखा लगा हुआ है।

मूर्तियां हैं और दो चार मूर्तियां एक--

डीसीबी बैंक है और उस पर कृष्णा लाइब्रेरी लिखा है और कुछ पेड़ पौधे भी--

एक आदमी घूम रहा है और इस पर लाइटें भी लगी हुई है यह बहुत ही सुंदर नजारा है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यह एक बिल्डिंग का फोटो है।